अच्छा वर्कर माना जायेगा।

ये बौद्ध संग्रालय है। यहाँ पे हम आते हैं। बौद्ध की चीजों को देख सकते है। ये पेड़-पौधे हैं। ये जंगल चीजे दिखाई दे रही हैं। ये आपको अच्छी तरह से दर्शाते हुए दिखाया गया है।

ये बोहोत अच्छी जगह मानी जाती है। धन्यवाद। मैं अपना इस वाइस रिकॉर्डिंग को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।